यहा काम के लोग स्थित तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो काफी प्रभावित रूप है।

एम एच फोर्टी-नाइन एफ झिरो थ्री टू फोर बहुत ही अच्छी गाड़ी है और बहुत ही अच्छी तरह से रखी है पार्किंग मे।